जैसा की हमें यहाँ दिखाई दे रहा है की यह एक रास्ता है और इस रस्ते पे हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

और इस पहाड़ी पर से हमें दिख रहा है की पानी बहता हुआ निचे की ओर जा रहा है और यहाँ हमें --

ओर उसी के पास में हमें बोहोत सारे पेड़ -पौधे ओर एक हमें स्कूल या --

और इस एक्सरसाइज हॉल में हमें बहुत सारी लड़किया दिखाई दे रही है जो की आप ने अपने आसन पर--

जैसा की हमें यह दिखाई दे रहा है की यह एक ब्लुएसिंग और यहाँ पर हमें एक --

सिनेमा हॉल में हमें रेड रेड पुरे में चेयर दिखाई दे रही है और सामने की और हमें एक--

दिख रही है और इस तरफ की ओर हमें ग्रीन घास उगती हुई दिखाई दे रही है जोकि ये बाउंड्री के पास ही है।

जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है की यह एक ब्यूटी पार्लर है और इस पार्लर के अंदर --

हमे तीन चेयर्स दिख रही है और हमें सामान भी दिखाई दे रहा है इस पार्लर की ओपनिंग अभी अभी हुई है।

खड़े हुए है और इनकी पिंक ड्रेस है और हमे यहाँ दो चार इंसान और दिखाई दे रहै है ।

जो कि ये डांस कर रहे है और यहाँ पर एक लड़की है जिसने झंडा पकड़ रखा है।